यहां कुछ लोग आदमी खड़े हुए हैं। कुछ बच्चे खड़े हुए हैं। एक बच्चा लाल कलर की टी-शर्ट पहने हुए है। एक --

यहाँ बहोत सारा पानी भरा हुआ है। उसमें कुछ आदमी पानी में घुसे हैं कुछ नहा रहे हैं।

यहां ग्राउंड में एक बस खड़ी हुई है। जो बस का कलर सफेद है।

और एक आदमी खड़ा है उस पेड़ के नीचे जो बौटल से पानी पी रहा है और नीले कलर की शर्ट पहने हुए है।

और सिर पर हेलमेट लगाये है मास्क लगाये हुए है।

यहां सामने एक ग्राउंड है। उसमें कुछ लाल कलर कि चेयर पड़ी हुई हैं | उन पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं | कुछ आदमी नीचे बैठे हुए हैं | बच्चों के --

कुछ बच्चे झूल रहे हैं कुछ आदमी नीचे घूम रहे हैं तार के बड़े-बड़े खंभे लगे हैं और लाइन तार दिख रहे हैं।